जोकि ब्लू और फिर ग्रीन कलर से रंगा हुआ है।

घर में कई सारे खिड़कियां भी लगे हुए हैं।

सामने में कई सारे चूइया भी रखे हुए हैं।

और साइड में कई सारे बकेट्स भी रखे हुए हैं।

पानी में कमल के पत्ते भी दिख रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा होल दिख रहा है।

सामने में कई सारे सॉस भी रखें हुए हैं।

जो कि सफेद रंग का है।

ऊपर में कई सारे फैन भी लगे हुए हैं।

जिसके हाथ में एक पानी का बोतल भी है।

सामने में एक फ्लावर पॉट्स भी रखे हुए है।

ऊपर में फैन भी लगा हुआ है।

में से कुछ जलेबी समोसे और फिर लड्डू है।

सामने में कई सारे टेबल भी रखे हुए हैं।

नदी के सामने एक बड़ा सा ब्रिज भी लगा हुआ है।